कुछ बाइकें कालें रंग की हैं। कुछ लाल रंग की हैं। विभिन्न प्रकार की --

अ बहुत सारे लोहे के रड से घेरे हुए है बहुत सारे रखे हुए हे ।

यहाँ पर एक चित्र नजर आ रही है। मानो ऐसा लग रहा है ये कोई बहोत बड़ा पार्क है।

यहाँ पर स्लॉट भी है जिसमे टाइल्स लगे हुए हैं।

कलर के हैं और उस के लेफ्ट साइड में एक मस्जिद नजर आ रही है।

और यहाँ पर एक लोहे के रड़ लगे हुए हैं।

और ये बैंक के कलर सफ़ेद रंग की है। यहाँ पर सामने में काँच से घेरा हुआ है।

अ यहाँ पर लोहे के रट्स पूरे जगह फैले हुए हे। बहुत सारी पाइपें गयी है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है।

यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फल है जैसे अंगूर शेव नाशपाती।

और यहाँ पे चोकलेटी कलर का शटर रका लगा हुआ है।

और ये मैदान के साइड में बहोत सारे बच्चे लोग आदमियों लोग के झुण्ड बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पर स्पोर्ट्स होने वाले हैं।